और बगल में आईडीपीआई बैंक है। जिसका साइनेज ब्लू कलर का लगा हुआ है।

उस रोड पर वो आदमी जो साइकिल चला रहा है उसने बैंगनी कलर बैग टांगा हुआ है।

पानी का कलर गंदा दिखाई दे रहा है और इससे पानी काफी तेज स्पीड में आता हुआ दिखाई रहा है।

इस कमरे को हरे ऑरेंज और सफ़ेद रंग के बैलून से डेकोरेट किया गया है और इसके सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसपे लेफ्टिनेंट खुशबू जैन का नाम लिखा हुआ है।

उसके आगे कुछ सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ियों से उतरते ही एक रोड है उस रोड के साइड में कुछ पेड़ लगाए गए हैं।